इसमें जो दिखाया जा रहा है पीछे एक रेड फोर्ट टाइप का घर है।

एक व्यक्ति चल के आ रहा है।

उसके पीछे भी एक वाइट टेबल लगा हुआ है।

और यहां ताड़ के पेड़ है।

तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है वो यहाँ बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

जोकि अलग अलग ड्रेस पहने हुए हैं।

वाइट कलर का इसका है।

पीछे ब्लू कलर येलो कलर की दीवार है।

बहुत सारे घर हैं ऊपर आकाश दिख रहा हैं।

यह स्विम करने के लिए एक ब्लू कलर का लगा हुआ है।

भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियां रखी हुई है।

और अलग अलग ड्रेस पहनी हुई है।

एक व्यक्ति ब्लू रैनकोट पजामा और चप्पल पहने हुए भींग रहा है उस पानी के सामने--

छवि में जो दिखाया जा रहा है एक बहोत बड़ा घर है।

यहाँ पे कुछ बात कर रहे है सब कोई।

एक वाइट कलर की है।

हां बहुत सारी तारे गई हुई है।

तस्वीर में दिखाया जा रहा है।

ये यहां पे तीन व्यक्ति हैं।

एक व्यक्ति है जो वाइट शर्ट और ब्लू जींस पहने फोन पे बात कर रहा है।

यहां पे ब्ल्यू में बशरत डेयरी फॉर्म लिखा हुआ।

इस तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है वह एक जिम हैं।